और इसमें जो है फ्लोर दिखाई दे रहा है और फ्लोर जो है ग्रे कलर करके दिखाई दे रहा है और बीच बीच में छोटा छोटा ग्रास भी दिखाई दे रहा है।

और इसमें जो है पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

और येलो कलर में दिखाई दे रहा है और ब्लू कलर का टीना दिखाई दे रहा है।

वायर भी दिखाई दे रहा है ग्रीन और व्हाइट कलर का।

और इसमें जो है आ पेड़ भी दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में।

इसमें जो है दुकान दिखाई दे रहा है।

और साथ ही साथ इसमें जो है चेयर भी दिखाई दे रहा है जो कि अ पीच और वाइट कलर टाइप में दिखाई दे रहा है।